जिसे लगा के लोग न चेहरे को ग्लो करते है।

और यह देखने में बहुत अच्छा होता है जोकि येलो रंग का हो --

यह एक स्विमिंग-पूल की मेज है जहा पर इसमे एक तैरने वाला भी --

और कुछ लोग टेबल पे बैठकर बातें कर रहे हैं और कुछ लोग इंस्टॉल के पास भी खड़े हुए हैं और अब आपस में बातें --

और इसका पूरा नाम तिवारी बुक डिपो है जो कि सीसी रोड चटनी गढ़ही दवरिया मे पडता है।

जहा पर एक अंदर की तरफ दो बाइके खड़ी की गई है।

यह एक सलून की बाहर की इमेज है जहा पर दो एडवरटाइजिंग लोगो लगाई हुई है।